ये एक कपड़ों का शोरूम है।

जिसके अन्दर कुछ कपड़े रखें हुए हैं।

और एक गुड्डा है जिन्होंने कपड़े पेहेन रखे है।

यह एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है।

कुछ हरे भरे पेड़ भी हैं और दो आदमी खड़े हैं।

ये एक घर है जिसमें जाली के डिजाइन बनी हुई है।

ये एक मंदिर है जिसमें दो मूर्ति खड़ी है।

और नीचे ब्लैक कलर की टाइल भी बिछ रही है।

और दो गुडे भी हैं जिन्होंने कपड़े पहन रखे हैं ऊपर एक पंखा लगा हुआ है और कुछ लाइटें भी हैं।

ये एक सरक है जिसमें बहुत सारी दुकाने हैं।

ये एक मैकेनिक की दुकान है।

जिसमें ऊपर बोहोत सारी पन्नियां टंग रही हैं।

और उसके आस पास बोहोत ऊंची ऊंची पहारे भी बनी हुई हैं।

और पास में मटी का रेता है।

नीचे कुछ मेज बने हुए हैं जिसके ऊपर कुछ सामान रखे हैं और एक ब्लैक कलर के चेयर भी रखे--

और कुछ आदमी भी हैं।

और लोहे का गेट भी है।

ये एक चर्च है जिसमें गॉड का चिन्ह बना हुआ है।

ये एक डॉक्टर के क्लीनिक है जिसमें एक जंगला बना हुआ है।

एक मेज के ऊपर कुछ सामान रखी है।

यहां पे कुछ मेज रखी हुई है।

ये एक बहोत बड़ी नहर है।

उसके ऊपर एक बड़ी सी पुल भी है।

जिसमें बहुत सारे मेज रखी है।

उसके ऊपर कुछ ताकिए भी रखे हुए हैं।

ये एक स्टेज है जिसमें हरे कलर का मैट बिछा हुआ है।